यह एक रिलायंस का ऑफिस है यहां पर लिखा रिलायंस प्रेस और ये लाल कलर के पट्टी पे लिखा हुआ है नीचे बाहर कुछ बाईकें खड़ी हैं।

एक एरोप्लेन है सामने वाल पर एक एरोप्लेन जा रहा है जिसमें नीले कलर का और लाल कलर की पट्टी पड़ी हुई है सामने वाल एक--

मैदान टाइप का बना हुआ है नीचे एरोप्लेन के पहिए लगे हुए हैं सामने वाल दो पर हैं लाल कलर का--

पुंछ बनी हुई है और यह देखने में बहोत ही सुंदर प्लेन दिख रहा है।

इसके सामने लिखा हुआ इस्लान की कंपनी का है हरे कलर का काउंटर रखा हुआ है उस काउंटर के ऊपर बहोत सारा सामान लक्खा हुआ है जैसे इलेक्ट्रिक की--

एक एक्सरसाइज करने की मशीन है यहां पर लोग अपने हाथों को रख के और पैरों पर पैर पे चलते हैं जिससे यह मशीन --

बड़ा सा हॉल है यहां पर एक पंखा लगा हुआ है जो कि काले कलर का है और सामने टी टु ओ टी लिखा हुआ है सामने वाले बहोत बड़ी सी रैक बनी हुई है इस--

रही है और मैदान खाली है और सामने जो खिड़की है उस पर ढेर सारे ये लोग बैठे हुए हैं।

एक स्नेहा जी का हुसैन जी का चौबीस ग्रेड गोल्ड का एक सर्टिफाइड प्योर मेकअप का सामान--

हुआ है इसके पीछे एक लाल कलर की तौलियां रखी हुई है और यहां पर कुछ और भी सामान--

में लोग बैठे हुए हैं सामने मैदान है मैदान के सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग है.

एक बगीचे टाइप का है इस बगीचे में बहुत सारे पेड़-पौधे लगे हुए हैं कुछ कटिंगदार पौधे रेलिंग के हिसाब से लगे हुए हैं सामने वाले एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसमें--

यहां पर कुछ पे सीढ़ियां है सीढ़ियों के सामने पर रास्ता गया हुआ है।

एक मैदान है इस मैदान में सामने वॉल एक घर टाइप का बना हुआ है और ढेर सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

यहां पर कुछ एक कुर्सियां पड़ी हुई हैं जो की चार कुर्सियां हैं इसके सामने एक पत्थर पड़े हुए हैं इंटें हैं इसमें मैं घर बनाने के लिए रखे गए हैं सामने वाले--

एक पेट्रोल पंप इस पेट्रोल पंप के सामने एक आदमी खड़ा हुआ है और और यहां पर एक पीले कलर का डस्टबिन रखा हुआ है.

में फायर का डंडा रखा हुआ है और हेलमेट पे पुलिस लिखा हुआ है जो के सामने वाल रखा है।

जोकि देख रहा है और एक टी_वी चल रही है सामने ढेर सारी मिठाई रखी हुई है और वो देखने मे--

एक पार्क जिसका नाम त्रिवेणी पार्क है यहां पर एक दीवार बनी हुई है दीवार के पीछे पार्क है इसमें एक दरवाजा भी है छोटा सा--

दिखाई दे रही है सामने वाले दो झूले हैं एक नीला और एक पीले कलर का है.

सामने बैठने के लिए सीट लगी हुई है और कुछ लोग सीट पर बैठे हुए हैं.

एक साड़ी की दुकान है यहां पर ढेर सारी साड़ियां टंगी हुई है दो आदमी नीचे बैठा हुआ है।

योकी साइकिल की दुकान है इस साइकिल की दुकान में रेड कलर के पट्टी पड़ी हुई सामने लाइटे जल रही है।

ये मोबाइल की दुकान हैं जिसका नाम हैं व्यखी मोबाइल रिपेयरिंग और यहाँ पर इसकी जस्ट नीचे लेकी ही लिखा हुआ हैं लाल कलर का काउंटर बना हुआ हैं इसमें बहोत सारे--

दुकान है इस दुकान पर बहुत सारे स्नैक रखे हुए हैं साथ ही साथ यहां पर कुछ बिस्किट के पैकेट और कुछ जूस के पैकेट रखे हुए हैं।

एक मैदान है इस मैदान में हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

स्कूल है जिसका नाम है माउंट लिट्रा ज़ी स्कूल यहां पर एक हरे कलर की मैट बिछी हुई है जिसमें एक आदमी और अपने बच्चों के साथ और अपनी वाइफ --

उनके सामने एक व्यक्ति जो कि स्टेशन की तरफ देख रहा है और कुछ लोग बोरी में सामान ले जा रहे हैं।

एक ढाबा है इस ढापे पे लंच डिनर चाप ही चाप मिलते हैं सामने वाल कुछ व्यक्ति जो ये बैठे हुए हैं और डिनर कर रहे हैं साम--

रात का समय हो रखा है दुकान सब बंद रखी हुई है.

यहां एक डैम है इस डैम में बहुत सारा पानी दिखाई दे रहा है इस पे कुछ पत्थर लाइन से लगे हुए हैं इस पत्थर के लाइन पर एक व्यक्ति एक लड़का तिसे --

पत्थर पर जाके खड़ा हुआ है और अपनी सेल्फी खिंचवा रहा है सामने वारी लिंग बनी हुई है और पेड़ लगे हुए हैं और पेड़ हरे बरे दिखाई दे रहे हैं।

ये खाली रोड है यहां पर एक अपार्टमेंट बना हुआ है और यहां पर कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं सामने भी पेड़ है पीछे भी पेड़ है।

ऊपर वाले छत दिखाई दे रही है छत का कलर लाल कलर का है और रोट पे कोई भी गंदगी दिखाई नहीं दे रही--

पेड़ पौधे हरे भरे दिखाई दे रहे हैं और यह देखने में बहुत सुंदर ही दिख रही है।

मेज भी है और सामने वाले हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं पूरी बिल्डिंग लाल कलर की है.

यहां पर सामने बल भी पीले लाल कलर की तीन कुर्सियां रखी है उसमें मेज रखा हुआ है मेज के ऊपर कप रखे हुए हैं.

लाइटें जली हुई है और कूलर भी दिख रहे हैं कूलर पंखे सब यहां मिलते हैं अंदर बार--

गौशाला है इस गौशाला में बहुत सारी गाय रखी हैं कुछ गाय घास खा रही हैं और कुछ गाय--

मेज कुर्सी पर सब बैठ के अपना काम कर रहे हैं और कुछ लोग एक आदमी ब्रीफिंग --

सामने बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं घने घने पेड़ हैं पीछे हल्की फुल्की घास दिखाई दे रही है।

सामने वाले दीवार टाइप का दिखरी है जोकी लोहे की दीवार है इसके सामने इसके पीछे मंदिर के पीछे एक मंद आदमी बैठा हुआ और देख रहा हैं।

इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है इनका नाम संगीता इलेक्ट्रॉनिक है उसके ऊपर लिखा है जीरो परसेंट ई_एम_आई होती है अनीडा की टी_वी मिलते हैं।

और टाटा स्काई भी लगाया जाता है इसके बगल में एक बिल्डिंग और दिख रही है जो कि घर टाइप का दिख रहा है।

इयरफोन टटकाए हुए हैं और माथे पर टीका लगाए हुए हैं और उसके बाद छोटे-छोटे हैं.

यहां यहां एक मार्केट है इस मार्केट का नाम एड चॉइस है यहां पर एक चाय की दुकान है ऊपर पेंटिंग प्रेस की दुकान बगल में--

ये एक मेरीज हॉल है क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से सजाया जा रहा है सामने बार हरे कलर का पदा लगा हुआ है उस पर फूल लगे हुए हैं।